बगल में कॉपी किताब बगल मे पेन उन रखे हुए है। ऊपर साइड एक और डायरी टाइप का है उसके बगल मे एक और रैक है। रैक के सामने साइड ब्लैक कलर का पट्टी है। पट्टी के अंदर रैक में सफेद कलर का पैंट है।

एक दीवाल है। दीवाल में काफी सारी पेंटिंग बनी हुई है जिसमें क-की लोग नाच रहे हैं। काफी लोग बैठे हुए हैं। काफी लोग खड़े हुए हैं। एक में सारे कोई बैठे हुए हैं।

यहाँ पर लड़कियों के कपड़े के पीछे कुछ लिखा हुआ है जिसमें एमयूएमएमवाईडीऐडीडीवाई पीछे साइड दीवाल है।

यहां पे काफी सारे गुब्बारे हैं। गुब्बारे सफेद कलर के गुलाबी कलर के नीले कलर के इनसब में बिंदी बिंदी बने हुए हैं। बीच में एक कपड़ा लगा हुआ है जो नीले कलर का है। उसमें ल ल पीछे साइड लोहे का पाइप या लकड़ी लगा हुआ है। सामने से एक टेबल है। टेबल लड़की का है। नीचे साइड कार्पेट बिछे हुए हैं।

पेड़ में काफी सारी पत्तियाँ लगी हुई हैंछोटी पत्तियाँ बगल में पीछे से मकान है। मकान सफेद कलर का हैनीचे से काफी लोग पैदल चल रहै हैं और पत्तियों के अगल-बगल लोहे का एक जंजीर बना हुआ है।

उसके पीछे काफी सारे पेड़-पौधे हैं जो हरे-भरे हैं। पेड़-पौधे के बगल में काफी सारे खम्बे हैं। खंभे लोहे के हैं उसमे वायर लगा हुआ है नीचे साइड एक मकान है। मकान सफ़ेद कलर का है उसके सामने काफी लोग खड़े हैं।

दुकान हैदुकान में काफी सारा समान है किनारे सारे रेक हैरेक लोहे की हैं सामने सारे एक बॉक्स हैं उसके सामने शायद यहाँ परयहाँ पर एक बॉक्स में कुछ लिखा हुआ है जो पीले कलर का लाल कलर का है।

जंगल है जंगल में काफी सारे हिरन है हिरन भी सिंह भी है अगल-बगल पेड़ पत -त्ते है जो काफी बड़े-बड़े है नीचे से काफी सारा घास जमा हुआ है।